डैम क्या होता है। बांध क्या होता है। बांध वो जगह होता है जोकी किसी नदी के किसी इलाके में गुसने और तबाही मचाने के रोकने के लिए बनाया जाता है।

ये दोनों एयरोप्लेन इस एरोड्रम पर लगा हुआ है और इसमें लोग यात्रा करते है।

जो किसी की एयरपोर्ट पर अपने रनवे पर खड़ा है और इसके नीचे एक आदमी खड़ा है जो आदमी इस प्लेन की ओर ही देख रहा है।

लोहे की ट्रेन के चलने के लिए पटरी का निर्माण करते हैं। ये फेक्टरी के अंदर की तस्वीर है।

और ये मटिरियल के मदद से बहुत सारा काम हो पता है। और कोई भी लोहा के इन्जेंन जो की रेलवे में यूज होता है वो सब यहाँ --

यह तस्वीर एक ग्रामीण परिवेश की तस्वीर है जिसमें एक बूढ़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है तथा उसके साईड में एक रोड है।

इस फोटो को देख लीजिए इस फोटो में चीनी मिट्टी के द्वारा ही एक टेबल शो बनाया गया है जिसमें लोग आ करके देख सकते हैं बीच में गुलाब का फुल है।